एक बहोत सुंदर सा रेस्टोरेंट है जो रेस्टोरेंट का नाम है--

कुछ बच्चे लोग पेंटिंग बना रहे हैं जैसे की--